इसमें स्टेट बैंक का ए_टी_एम भी लगा हुआ है पोस्टर ।

इस चित्र में हमें एक दुकान दिख रहा है इसमें काउंटर के अंदर में एक आदमी खड़ा एक काउंटर के बाहर में खड़ा है।

इस चित्र में हमें एक दुकान दिख रहा है शिवम हार्डवेयर ।

लगा हुआ एक एल_ई_डी टी_वी लगा हुआ है एक यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है।

यहां बहुत सारे तारे दिख रहे हैं बाहर में बहुत सारे लोग हैं।

इस चित्र में हमें तीन दुकानें दिखा है एक फैमिली रेस्टोरेंट है एक कालका स्वीट्स है और एक फर्नीचर का दुकान है जिसमें बहुत सारे सामान दिख ।

इसमें बैटरी भी दिख रहा है पेन भी दिख रहा है इसमें कनेक्टर भी है केबल भी है इसमें।

इस चित्र में हमें एक बच्चा दिख रहा है जिसके हाथ में एक माइक भी है।

इस चित्र में हमे एक दुकान दिख रहा है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए है।

एक बोरा भी दिख रहा है रेड कलर का एक प्लास्टिक है उसमें भी मिर्ची डाला हुआ है।

एक पानी की बोतल है एक जग दिख रहा है तीन चेयर बहुत सारी लाइटें दिख रही हैं।

डस्टबीन दिख रहा है बैठने के लिए चयर भी दिख रहा है दो खम्बा लगा हुआ है।

आगे मे भी एक पुतला दिख रहा है। इसमे बहुत सारी लाइटे लगे हुए है।

इसमें बहुत सारे लोग आए हैं पूजा करने के लिए।

इसमें बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं दो नारियल के पेड़ हैं।

इस चित्र में हमें एक होटल दिख रहा है जो कि बहुत बड़ा है।

एक पानी का पाइप दिख रहा है जिसमे फुहारा निकल रहा है पानी का।

इसमें बहुत बड़े बड़े चट्टान भी दिख रहे हैं।